केमेस्ट्री का चार्ट भी लगा हुआ है यहां पर कुछ हमलोग का इंडिया का मतलब --

यहाँ एक अ-अ-अ यहाँ एक पोस्टर यहाँ एक झंडा लगा हुआ है। इसमें एक झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कुछ पेड़-पौधा दिखाई पड़ रहा है और वहॉँ पे कुछ ऊचा कर के कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पेड़-पौधा है और कुछ पेड़-पौधा है जहाँ --

यह एक है इसका पोस्टर भी लगा हुआ है। यह एक वाइट कलर वाइट कलर और से पेंट किया हुआ है और यहाँ पर खिड़की है और दिवार है घिरा हुआ है।

उधर पेड़-पौधा भी हैं और व्हाइट कलर का बस भी है और बोहोत सारे आदमी भी हैं यहाँ पर और कुछ घर भी हैं और जंगल-वंगल जंगल भी दिखाई पड़ रहें हैं।

और कुछ अंदर में और भी कुछ रखा हुआ है और यह ब्लैक कलर का है और आसमान भू आसमान भूरा कलर का दिखाई पड़ रहा है और नीला कलर का और --